और कई सारे बिल्डिंग है मकाने है और हड़ेभड़े घास है।

यहाँ टेबल कुर्सी अच्छी तरह से सब कुछ उपलब्ध है।

यहाँ गाड़ी शोरूम है जो गाड़ी को ड़िपेयड़िंग रेपेयरिंग किया जाता है और यहाँ एक रेड कलर का गाड़ी है जो--

यहाँ एक कुत्ता है जो कहीं भाग के जा रहा है।

यहाँ एक गाड़ी शोरूम है औडी चंडीगढ़स के इनाम से--

और यहाँ के बच्चे भी बहोत साड़े अच्छे है और स्कूल भी बहोत अच्छा है।

गोभी भी है आलू भी है और पत पत्तागोभी भी है।

और ए_टी_एम काफी बड़ा है और यहाँ बोहोत साड़े आदमी आते है ए_टी_एम् से पेसे निकालने--

और यहाँ पैशन कलड़ का बाइक लगा हुआ है और--

और कुछ बाते करने आते है कोई टहलने आते है।

और फिर पेर पौधे भी बहोत साड़े है यहाँ का वातावरण भी बहोत अच्छा है।

और यहां बेंच भी लगा हुआ है बैठने के लिए और आराम से घूम फिर भी सकते हैं।

यह एक यह एक डॉग है जिसको ब अ चोट लगा हुआ है उनको डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहे है दो डोक्टर हैं।

यह एक बहुत बड़ा बिल्डिंग है और दो चार भी लगे हुए हैं।

यहां एक होटल है जो चौबीस घंटा रेंट में मिलते हैं और लेना हो तो ले सकते हैं।

औड़ यहाँ सब चीज राशन पानी और कोल्ड ड्रिंक्स ठंडा--

लेडिज भी है और जेन्स भी है और कोकोकोला का फ्रिज भी है।

यहाँ फूल का गार्डन है और निचे पानी--

और पत्ते भी बहोत बड़े बड़े हैं और घास भी है बहोत सारे।

एक बहुत बड़ा ही एजेंसी है और यहाँ बोहोत साड़े गाड़ी लगे हुए हैं और रोड पे गाड़ी भी चल ड़हे हैं दो गाड़ी सामने भी है।

रोड है और पार्क साइड बनाया हुआ है पेर पौधे बहोत सारे--

यहाँ है एक पेड़ पौधे बोहोत साड़े हैं और एक यह हॉस्पिटल है और पास में बोहोत सारे मरीज भी इलाज करवाने के लिए --

यहाँ एक आदमी है जो नदी किनारे बैठ के समुंद्र का इंजॉय ले रहा है।

यहाँ कुछ बच्चियाँ है जो प्रोजेक्ट पूड़ा कम्पलीट कर ली हैं इसको प्राइज मिला हुआ है।

बांधी भी है और ड्रेस भी डी_ऐ_वी का पहना हुआ है।

और कुछ पत्ता जैसे है बड़ा बनाया हुआ है सीमेंट से उसको साइड साइड से--

और पेड़ पोधे भी हैं और यहाँ एक एरोप्लेन भी लगा हुआ है।

यहाँ एक क्रिकेट फिल्ड है औड़ यहाँ एक बड़ा सा पोल है।

इस फोटो में अपना ढाबा अपना वैष्णो ढाबा है और यहां एक बिल्डिंग है ये एक कोका कोला का दुकान है।

और पिंग पीला वाला फूल भी है और गुलाबी फूल भी है रेड फूल भी है।

जो रेड कलर का टी शर्ट पहना हुआ है और वातानकूलित ऐ_सी वाला बस है।

वाइट कलड़ का उधड़ से फ्ड़ेम है औड़ गड़ाउंड में ये ये पेड़-पोड़े भी पेर पौधे भी बोहोत साड़े हैं।

और लीची का भी पेड़ बहोत सारा है और टेबुल कुर्सी भी बहोत सारे लगे हुए है यहाँ दो ओ ओ एक लड़का एक लडकी आए हैं जो डो --

यहां बहोत सारे कंपनी एंड फैक्ट्री औड़ पढ़ा पढ़ाई का इंस्टिट्यूट एकेडमी है।

यहाँ काड़ भी लगे हुए हैं आदमी भी हैं पंजाबी वाले जो ब्लू टोपी पहने हुए है साइड में--

रेडियम आर्ट अं म मिर्ची का है जो में यहाँ पे मिर्ची फ्ड़ाई मिलता हैं।

लोग सब बैग बैग टांग के ले जा रहे हैं समान वमान अपने अपने--

यहाँ पहाड़ है और पहाड़ के ऊपर से फोटो लिया गया है जो--

औड़ यहाँ पे भी बहोत सारे जंगली पेर भी है और फ्लावर्स का भी पेर है।

यह एक ट्रांसफार्मर है जो झुका हुआ है थोड़ा सा--

यहाँ पे टिड़ी विड़ी भी बहोत साड़ा है और गार्डन भी बहोत अच्छा है जो बादल बाड़िश ओड़िश होने वाला है और होस्पिटल भी है यहाँ पे --

यह एक कॉलेज है जो कॉलेज बनाया गया हुआ है बहोत सारे छात्र पढ़ने आए हुए हैं यहां पे बहोत सारी गाड़ी लगे हुए हैं टी_वी लगे हुए हैं।

और बिल्डिंग भी बहोत अच्छा सा जैसे बनाया हुआ है लाल बिल्डिंग है और कॉलेज के टाइप का बनाया हुआ है।